चर्च ईसाइयों का पूजा घर होता है।

यहा पर हम राजमा भी खरीद सकते हैं हम ब्राउन ब्रेड भी खरीद सकते हैं हम कॉर्नफ्लेक्स भी खरीद सकते हैं हम सफ़ोला मसाला ऑसट भी खरीद सकते है।

इसके ऊपर हम हमे छोटी-छोटी पानी की बोतले भी नजर आ रही है यहाँ पर हम ठंडा पानी भी ले सकते है।

एक दुकान है इस दुकान में बोहोत सारा समान मिलता है यहाँ पर हम मेगी भी खरीद सकते हैं।

यहाँ पर मछलियों की कई दुकाने लगी हुई है कुछ ग्राहक आ के मछली खरीद रहे है। यह मछली खाने में बहोत ही स्वादिष्ट-----

इसमे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे है यहां पर एक लोग --

इस दुकान में वीवो कंपनी का मोबाइल मिल रहा है।